उपर सी-जी-टी वी एस लिखा हुआ है सामने कुछ बाइक खड़ी है ।

सामने एक मकान है उसमे लोहे की रेललिंग लगी हुई दिख रही है लोहे की जाली वाले घर दिख रहे है।

उपर कुछ लाइटिंग रखी हुई है लोहे की फ्रेम मे और दो खंभे गड़े हुए है ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है ।

उसके साइड मे कुछ कुर्सी पड़ी हुई है और काँच का बेड दिख रहा है ।

और नीला कलर पुता हुआ है उसके सामने कुछ दुकान लगी हुई है एक बस खड़ी है कुछ आदमी घूम रहे है एक बाइक से जा रहे आदमी--

सामने एक बिल्डिंग पर बोर्ड लगा हुआ है और उसकी छत पर भी खंभे लगे हुए दिख रहे है।

यहाँ सामने एक कार्यालय है उस कार्यालय का एक बड़ा गेट है उस गेट के सामने एक जीप खडी हुई है।

मोटे-मोटे पेड़ दिख रहे है जो लाल और सफ़ेद कलर से पुते हुए है उसके अंदर एक मकान बना हुआ दिख--

यह एक शोरूम है शोरूम की नीले कलर की बिल्डिंग है।

यहाँ एक ग्राउंड मे बहुत सारी गाड़िया खड़ी हुई है एक गाड़ी का कलर नीला है बाकी सफ़ेद है और ग्राउंड मे एक खम्बा--